वहाँ कुछ स्कूटी खड़ी हैं और एक पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ --

यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं।

और यहाँ पे पूल है जिसके बहोत सारे पिल्लर्स नजर आ रहे हैं।

यहाँ सामने में एक काउंटर है जिसपे बहोत सारे फल रखे हुए है ।

यहाँ पे एक डेस्क है जिस पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

एक छोटा सा तालाब है।

यहाँ दो लड़कियाँ हैं और एक लेडी है ।